और एक बड़ा सा पेड रखा है उसपे।

एक शादी हो रही है।

और टेबल रखी है कुर्सी रखी है बहोत सारी।

एक दुकान है जिसमें की बहोत सारा सामान रखा है।

और साइड में खानो मे सामान रखा है इस अ--

और है बहुत सारी कागज ओ रखी हैं।

ये एक हॉस्पिटल है जिसमें बहोत से चेयर रखी है बैठने के लिए।

और ऊपर गुब्बारे हैं लाइट लग रही है ऊपर।

और एक मशीन सी पड़ी है तार पड़े हैं।

पीछे की तरफ फुल लगे है और--

इसमें बहोत सारी टाइल लगी है सामने।

ऊपर भी डिजाइन बन रहा है।

स्विच बोर्ड है लाइट लगी है बहुत सारी।

और एक सीढ़ी रखी है इसके सामने यहां पे बड़ी सी।

एक ही घर है जिस--

एक ट्रैक्टर की एजेंसी है जिसमें कि बहुत सारे आयशर ट्रैक्टर खड़े हैं।

उसका वो लग रहा है बैनर --

पिक्चर में एक गाड़ी खड़ी है और साइड में बहुत सारी कुर्सी रखी है।

पीछे की तरफ भी एक गाड़ी है और एक खंभा है।

और एक पेड़ यहां पे भी पास में--

ऊपर लाइट लगा रही है बहोत अच्छी।

इसके साथ और नीचे टाइल बिछ रही है।

इसके और साइड में भी तेल अ बहुत सारे सामान रखा है।

और रर पंखे लग रहा--

और आदमी है एक बैठा और बहोत सारी दवाई रखी है टेबल पे।

गिटार रखी हुई है इसमें लाइट लगी हुई है।

यह पीछे पर्दा लगा है एक।

इस पिक्चर में बहुत सारी चट्टानें है।

और पत्थर है बहुत सारे नीचे पत्थरों पे बहोत सारा कूड़ा पड़ा है।

और पीछे भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं नीचे मट्टी है।

उस साइड में पेड़ पौधों उपर निचे ट्री है छोटे छोटे--

ये एक मार्केट है जिस इस ये और इसमें फल फ्रूट है बहोत सारे।

दो तीन आदमी खड़े हैं बाहर और दो तीन बाइक खड़ी हैं।